इस रेस्ट्रा पर झंडे और बल्ब भी दिख रहा है।

यहां पर खिडखिया दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर यह दिख रहा है कि बहुत सारे पुरुष और महिला भी आए हुए हैं।

और वो जमीन पर कुछ पत्थर भी दिख रहा है।

को सफेद रंग से पेन्ट किया हुआ है।

थोड़ी दुर में ही टीना से वाल बनाया हुआ है।

दीवारों को हरे रंग से पेंट किए हुए दिख रहा है।

ये माइक और कारपेट भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में व्यक्ति का सिर दिख रहा--

मुझे इस तस्वीर में यह दिख रहा है कि ये एक गराज है।

कुछ खराब टायर भी दिखाई दे रहे है।

एक बड़ी सी पोस्टर में होंडा लिखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में यह दिख रहा है कि हर जगह टाइल्स लगाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में यह दिख रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा है।

केले के सामने ही काजू और किशमिश राखे हुए हैं।

यह इस तस्वीर में यह दिख रहा है की सेल्स पर डॉग फूड रखा हुआ है।

वो भी कई प्रकार के और सेल्स के सामने ही टेबल है।

और पेपर के रंग कोई लाल है।

मुझे इस तस्वीर में यह दिख रहा है कि एक बड़ी सी महल है और--

और मुझे इस तस्वीर में स्कूटी चलाते हुए इंसाने दिख रहा है।